इस फोटो में मट्ठी नजर आ रही है।

इस फोटो में पंखा नजर आ रहा है।

इस फोटो में परदा नजर आ रहा है।

कुर्सी नजर आ रही है इस फोटो में रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

इस फोटो में जिम नजर आ रही है।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

इस फोटो में स्कूल नजर आ रहा है।

इस फोटो में शटर नजर आ रही है इस फोटो में गेट नजर --